आ दोकान ह। आलू धइल बा एमे सजावल बा। दू दू चार दू छः दू सात आठ नौ ठ मने --